और पेन्हले है काला कलर के दुपट्टा लेले है पीला कलर के फुकना से तैयार करले है बैलून से।

सबके गेट में ताला --

यहाँ दूगो टोटो हई श सजैले हई फूल से गेंदा फूल से।

सीढ़ी हई लाल जइसन फूल हई एगो ल जननी हई एगो ड्राम हई ब्लू जइसा अभी तैयार कर रहले।

और इधर हरियर गाछ है और सब तेल भला भरा --